यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक के बगल से एक यूनियन बैंक का एटीएम् भी बना हुआ है और दो लड़के खड़े हुए हैं।

बगल अ सामने गाड़ियां स्कूटीया काफी काफी खड़े हुये हैं। उसके बगल से एक दुकान भी बना हुआ है।

एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। अगल-बगल दिवाले हैं खिड़कियां लगी हैं ऊपर पूरे गुब्बारो से सजा हुआ है पंखे लगे हुए हैं।

और लाइट लगी हुई है। सभी लोग इस कुर्सियों पर बैठी हुई हैं सामने स्टेज बनी हुई है जो --

सामने खड़े हुई हैं कुछ अगल-बगल भी खड़े हुई हैं और बोरियो में भी हर प्रकार के फूल रखा हुआ--

रास्ते हैं जिस रास्ते पर काफी भीड़-भाड़ लगी हुई है और सभी लोग जो ई हाथों में ढोलक रखे हुए हैं।

नदी है जिस नदी में पानी लहरा रहा है एक लड़का पत्थर में बैठा हुआ है सामने देख रहा है।